इस तस्वीर में हम यहाँ पर देख सकते है यहाँ पर हमें बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहे है यहाँ पर एक रेलिंग भी दिखाई दे रही है कॉरिडोर में कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है।

मंदिर का कलर सफ़ेद दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें बाहर आस-पास भारत देश के झेंडे भी दिखाई दे रहे है और अंदर मुर्तिया भी दिखाई दे रही है उसके पास में एक और मा-मंदिर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हम छोटे-बड़े पत्थर भी देख सकते है और साइड भी देख सकते है बड़े---

इधर में हम देख सकते हैं यहां पर एक आदमी कुर्सी पर बैठा दिखाई दे रहा है और एक आदमी लैपटॉप चला रहे हैं या किसी ऑफिस दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हम देख सकते है यहां पे हमे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही हैंऔर उसके एक गेट दिखाई दे रही है जहां दो लोग खड़े दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में हम देख सकते है यहाँ पर हमे कुछ साड़ियां दिखाई दे रही हैं जिसका कलर लालपीला और डार्क रेड दिखाई दे रहा है जो कि हेंगर मे टांगी दिखाई दे रही है।

मंदिर के सामने एक डिज़ाइन दिखाई दे रही है | यहाँ पे हमे एक गेट भी देख सकते है | आस पास कुछ झाड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं | और यहाँ पर हमे खुला आसमान भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हमें बैलून्स भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे गाड़ी दिखाई दे रहे है यहाँ पर हमें स्विच बोर्ड दिखाई दे रहा हैं यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है ओनली फॉर गर्ल्स ।

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमे कुछ दुकाने दिखाई दे रही हैं अलग-अलग जैसे की सैमसंग हैंएक्सिस केयर है यहाँ पे अलग-अलग बाहर कुछ कचरा और बाइके भी दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर मे हम देख सकते है यहाँ पर हमे एक वेयरहाउस दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमे खुला आसमान दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमे तार है यहाँ पर हमे एक दीवार दिखाई दे रही है दीवार के पास मे घास दिखाई दे रही है।

तस्वीर में हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे पानी का बांध दिखाई दे रहा हैं जो कि आधा खुला दिखाई दे रहा है। पानी पड़ा मिट्टी दिखाई दे रहा है। पानी का फ्लो बोहोत तेज़ है। बांध के ऊपर एक सड़क दिखाई दे रही है।